यहाँ एक फैमिली रिजॉर्ट है यहाँ पर पिज़्ज़ा हट सबवे और द फूड स्ट्रीट ।

कार खड़ी है। यहाँ ये लग रही है मुझे मतलब की इस ब्रांच की अच्छी-अच्छी --

बात करते हैं सब सही समझाते हैं और --

फुआरा बना रखा है और यहाँ पर रात को लाइट भी जलती है जिससे बहोत अच्छा लगता है।

और सभी अपने-अपने मतलब के बुजुर्गों वगैरह आते हैं। सुबह एक्सर्साइज़ करते और बात करते हैं।

यह हमारे मुज्जफरनगर का मेन शहर है। यहाँ पर --

पठान मूवी है बहोत अच्छी मूवी है। यहाँ पर हम कुछ पीअंदर से ही कुछ खाने का सामान भी ले सकते हैं। यहाँ पर थ्री डी पर मूवी चलती है।

लगवाया हुआ है और ये देख सकते हो आप कितना मोटी इसकी दो साइड की दीवारें है। देख सकते हैं आप।

लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो एक्सहिबिशन लग रहा है बालाजी के नाम से देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है।

इ पार्किंग की फैसिलिटी भी है और यहाँ पर अच्छा-अच्छा ग --

यह एक नाई की दुकान है। सतगुरु के नाम से दुकान है। यहाँ पर ऊपर देखो कितना अच्छा लग --

कैंडल लेकर जाते हैं और यहाँ पर --

हम और इसमें मैंक्सिमम लिमिट एक दिन की एक ए.टी.एम की होती है।

यहाँ पर तीन महीना का तीनसों नौ रुपये में यहाँ पर अच्छा-अच्छा सही ही मतलब --

यह दक्ष ट्रेड है भोपा रोड मुजफर नगर पे है यहाँ पर --

जो वो है मतलब ई- रिपेयर वाला जो है वो थोड़ा दिक्कत देता है रिपेयर करने में।

जान बाबू चौक मैंनरोड मोतीहारी मोतीहारी मे है।

यह एक कृ क्रिकेट का मैंथ है यहाँ पर रात को।

यहाँ आप देख सकते हैं ए.डी. पैथोलॉजी सेंटर है। यहाँ पर भोपा रोड नगर पर है। ये है डॉक्टर अर्जुन कुमार का है। ये है --

छः आदमी बैठ सकते हैं कहीं पर साथ यहाँ पर अच्छा-अच्छा फ़ूड मिलता है। बहोत अच्छी-अच्छी डिजर्ट मिलती हैं यहाँ पर और --

फंक्शन हो रहा है जैसे कि देख सकते हैं कुछ लड़कियां यहाँ पर पेड़ पौधे बनकर खड़ी है कुछ कुछ के हाथ में फ्लावर्स है।

कोचिंग सेंटर है। यहां पर बीए बीकॉम और टेंथ टवेल्थ की इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है।

चिल्ली पोटैटो डोसा बर्गर अच्छे बनाये जाते हैं। यहाँ पर इसका टवे टेस्ट बहोत ही बढ़ियां है और रेट भी।

ठीक-ठाक रहते हैं और यह खाने में भी ठीक है और --